हमने काफी ये पत्थर है जो भूरे रंग के हैबड़े बड़े पत्थर हैचट्टानें है सामने के साइड पे हरे रंग की घास है।

इसपे पेड़ लगे जो हरे रंग के पत्ती है जिसपे सामने भूरे रंग के मिट्टी कुछ छोटे-छोटे कंकड़ और पत्थर हैं।

छत का रंग सफ़ेद हैं एक सीढ़ी बना हुआ हैं छोटी सीढ़ी हैं जो सफ़ेद रंग की हैं।

घर है जो सफ़ेद रंग की बालकनी बनी हुई है एक पर्दे खड़े हुए है जो गेट लगे हुई है बाहर के साइड पे बाइकें खड़ी है जो काले रंग की बाइक है बगल में एक ऑटो खड़ी हुई जो काले रंग की है।

एक कार खड़ी सफेद रंग की सफेद और नीले रंग के आसमान है पीले रंग की बिल्डिंग हैबहोत सारी खिड़की लगी जिस पर कांच लगी हुई है।

पेड़-पौधे लगाए गए हैं जो हरे रंग की पत्तियाँ हैं भूरे रंग के घास हैं।